ये कोई गाड़ी की शॉप है। मतलब गाड़ियाँ किराये पर मिलती हैं यहाँ और सब प्रकार की गाड़ियाँ हैं। सभी हैं।

हैं और यहाँ मशीनरी रखी हुई है। टेबल पर यहीं है। कुर्सी भी पड़ी हैं और हवादार जंगला भी।